टेबल पर कुछ केचअप भी रखा हुआ उधर एक आदमी खड़ा है जिसने लाल टी शर्ट और नीचे जींस --

पीछे खेत में दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं एक व्यक्ति अकेला घूम रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग में जाने के लिए एक सीढ़ी भी लगा हुआ है सीढ़ी पर लाइट भी लगा हुआ --

दुकान के बाहर टी_वी और स्पीकर का चित्र बना हुआ है दुकान का सेटर ब्ल्यू कलर का है दुकान में दो बल्ब जल रही है।

यहाँ पर एक फ्रॉक भी है जिसका कलर है वाइट यहाँ पर कुछ टॉप और प्लाजो भी है।

रास्ते पर एक साइकल चलाकर एक आदमी जा रहा है जिसने चरक शर्ट और कला पैंट पहना हुआ है सामने एक पोल भी दिख रहा है।

इसके चारों तरफ रेड और वाइट कलर के बैलून से डेकोरेशन किया हुआ है पीछे के परदे पर हैप्पी बड्डे लिखा हुआ है।

यहां एक जिम का रूम है जहा पर दो आदमी खड़े है एक आदमी ने काला टी शर्ट और जींस पहना है एक आदमी ने टी शर्ट और ब्लू जींस पहना है उसने पॉकेट में हाथ भी डाला--

फैक्ट्री के अगल बगल चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहा काउंटर पर कुछ सामान रखे हुए है जैसे कि काजू बादाम किशमिश डिब्बा मे पैक करके रखे हुए है।

यह एक कपड़ा का दुकान है यहां बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं।

ऊपर में बहुत सारे पुतलों को कपड़ा पहना कर टांगा गया है।

बैलून का कलर गोल्ड एंड ब्लैक है।

पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं बाहर में एक छोटा सा बगीचा है।

एक बहुत बड़ा तीन तल्ला बिल्डिंग है।